फ्राक सूट कुर्ते यहाँ पर सब उपलब्ध होते हैं।

इस प्लेट मे एक कॉक एक चम्मच एक पनीर का टुकड़ा एक प्याज एक कचौरी और एक --

यह वेडिंग पॉइंट का फ्रंट एरिया है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं और यह बहुत सुंदर सजाया जाता है इसमें कई प्रकार के फूल लगाए जाते हैं ताकि लोग इसको देखकर अअ आकर्षित हों।